उसके आगे साइड लकड़ी का वाल है और पीछे साइड क्यू_आर स्कैनर का फोटो भी टंगा हुआ है।

इंसान का भीड़ भी बहोत सारा है जैसे कि यहां पे मेला लगा हुआ है।

यहां पे बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारा बस रखा हुआ है।